नमस्कार steady state response of circuits पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ:
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए:
पहले circuit का steady state response परिभाषित करते हैं
steady state response निरिक्षण का वह समय है जब circuit साम्यावस्था यानि ईक्वलिब्रीअम की स्थिति में होता है
अब हम phase shift परिभाषित करेंगे phase shift waveform के phase में सापेक्षिक relative बदलाव होता है
ac हम rc circuit में ac phase shift का अध्ययन करते हैं
इस परिक्षण में हम circuit में voltage परिवर्तन और phase shift को मापेंगे
यह परिक्षण करने के लिए a1 sine से जोड़ा गया है
यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window में a1 पर click करें और ch1 तक खींचें
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें
sine waves को प्राप्त करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ
experiments button पर click करें study of ac circuits चुनें
study of ac circuits और schematic windows खुलती है schematic windows circuits diagram दिखाती है
study of ac circuits window भिन्नभिन्न voltages के साथ तीन वक्र दिखाती है
काला वक्र a1 पर applied voltage है
लाल वक्र प्रतिरोधक पर voltage है
नीला वक्र संधारित्र पर voltage है
window के दायीं तरफ हम phasor plot देख सकते हैं
plot में धनात्मक xअक्ष प्रतिरोधक पर voltage दिखाता है
धनात्मक yअक्ष प्रेरित्र inductor पर voltage दिखाता है
ऋणात्मक yअक्ष संधारित्र पर voltage दिखाता है
तरंगों की आवृत्ति 1494hz है
calculator आवृत्ति प्रतिरोध धारिता और प्रेरकत्व की default values दिखाता है
आवृत्ति की value को बदलकर 1494hz और प्रेरित्र की value को बदलकर 0 mh zero milli henry करें
calculate xl xc and angle button पर click करें
xc xl और phase angle की values दिखती हैं xc और xl धारिता और प्रेरकत्व की impedances यानि प्रतिबाधायें हैं
dphi phase shift है calculated phase shift 468 degrees है
अब निम्न formula उपयोग करके हम phase shift की गणना कर सकते हैं: φ phase shift = arctan xc/xr जहाँ xc = 1/2πfc है
ac हम rl circuit में ac phase shift का अध्ययन करेंगे
इस परिक्षण में हम फेज़ shift मापेंगे जब संधारित्र को प्रेरित्र से बदला जाता है
यह परिक्षण करने के लिए a1 sine से जोड़ा गया है
560 ohm का प्रतिरोधक a2 और gnd के बीच जोड़ा गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
दो sine waves बनती हैं
experiments button पर click करें study of ac circuits चुनें study of ac circuits window खुलती है
window के दायीं तरफ हम phasor plot देख सकते हैं
आप deg सकते हैं कि फेज़ shift 27 deg है आवृत्ति और voltages की values पर ध्यान दें
निम्न value बदलें:
values को देखने के लिए calculate xl xc and angle button पर click करें calculated phase shift31 deg minus 31 degree है
अब formula उपयोग करके फेज़ shift की value की गणना करते हैं
phase shift φ = arctan xl/xr जहाँ xl = 2πfl यहाँ l प्रेरकत्व है
बाहरी प्रतिरोध value 560 ohm और coil का प्रतिरोध 800 ohm है कुल प्रतिरोध = 560 ohm + 800 ohm = 1360 ohm
ac lcr circuit में ac phase shift का अध्ययन करेंगे
हम फेज़ shift मापेंगे जब प्रेरित्र और संधारित्र circuit में जुड़े हुए हैं
इस परिक्षण को करने के लिए sine a1 से जोड़ा गया है
coil और 1 uf 1 micro farad संधारित्र a1 और a2 के बीच जोड़े गए हैं
1k प्रतिरोधक a2 और ground gnd के बीच जोड़ा गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
दो sine waves फेज़ shift के साथ बनती हैं
experiments button पर click करें study of ac circuits चुनें
study of ac circuits और schematic windows खुलती हैं schematic windows circuits diagram दिखाती है
study of ac circuits window भिन्नभिन्न voltages के साथ sine sine waves दिखाती है
window के दायीं तरफ हम phasor plot देख सकते हैं
waves की आवृत्ति 1494hz है a1 पर कुल वोल्टेज 353v है a2 पर r में वोल्टेज 250v है
फेज़ shift 431 deg degree है
निम्न की value बदलें:
values को देखने के लिए calculate xl xc and angle button पर click करें calculated फेज़ shift values 448 deg है
अब formula उपयोग करके फेज़ shift value की गणना करते हैं
phase shift φ = arctan xc – xl/xr
बाहरी प्रतिरोध की value 1000 ohm है फेज़ shift की calculated value 4477 degrees है
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
एक नियत कार्य में प्रतिरोध और धारिता की विभिन्न वैल्यूज़ उपयोग करके rl और lcr सर्किट्स के ac फेज़ शिफ़्ट का अध्ययन करें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
हम spoken tutorials का उयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है